कैरेट दिखाई दे रहे है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है येलो शर्ट पहना हुआ--

और पीछे में चेयर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे मोटर्स दिखाई दे रहा है।

यह एक नाव की तस्वीर है जो पानी में है यहाँ पाँच आदमी और औरत दिखाई दे रहे है।

--चर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ औरतें दिखाई दे रही है यहाँ एक संतरा कलर का कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं मछली मार्किट है।

इस इमेज में पंडाल दिखाई दे रहे है बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ आदमी बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी काले रंग का थैला पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।